और एक-अ बहोत बड़ा मॉल नज़र आ रहा है जहाँपर दोनों तरफ से लिफ्ट दिखाई दे रही है ।

और वहाँ पर पर्वत नज़र आ रहे हैं जिस पर भी काफी हरे पेड़ दिख रहे हैं और वहाँ काफी चट्टानें नज़र आ रही हैं।

वहीं पर जो वो कंपाउंड में बाहर दिख रहा है जो की पीले रंग का नज़र आ रहा है कुछ हरी घास नज़र आ रही है वहीं कुछ छोटे हरे वृक्ष दिख रहे है और उसी के साथ कुछ अन्य हरे पेड़ भी वहाँ पर नज़र आ रहे है ।